यहा बीच मे थोड़ा नदी है हल्का सा पानी भरा हुवा है और राइट साइड बहुत सारे खेत हे खेत दिखाई दे रहे है।

यहां साइड मे ये गाड़ी भी खड़ी हुई है। और आगे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है। आगे से एक व्यक्ति आ रहा है। और बहुत सारे पेड़--

यहा बहुत ही यहा बहुत बड़ी केक की दुकान है इस पर बहुत सारे केक बने हुए रखे हुए है रेड कलर मे व्हाइट कलर मे --

यह रोड है रोड के बगल मे बहुत बड़ी बिल्डिंग है और एक लड़की अंदर जा रही है।

यहाँ क्रीम कलर का स्टेज बना हुआ है आउट साइड चेयर रखी हुए है बहुत सारे लोग दिख रहे --

और यहा पर बहुट सारी झंडिया भी लागी हुई है और बहुत ही बड़ी कंपनी बनी हुई है और बहुत सारे पेड दिख रहे --

पी आगे बहुत सारे घर भी बने हुए है।

रोड है रोड के अगल बगल बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है स्कूटी खड़ी हुई है कार खड़ी हुई है व्हाइट कलर की काले कलर की राइट साइड कार गाड़ी खड़ी हु--

आगे भी दूरदूर तक गड़िया खड़ी हुए है। राइट साइड घर बनी हुए है और बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड के बगल मे बहुत सारे पेड़ है पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और आसमान व्हाइट कलर मे दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़ा ग्राउंड --

और पीछे चद्दर सेट है और घर भी बना हुआ है पैड भी दिख रहे है।

रोड के बगल मे एक कार खड़ी हुई है और साइड मे दुकाने है।

सामने एक बहुत ही बड़े गेराज मे --

बहुत सारी गाड़िया ही गाड़िया लगी हुई है गाड़िया ही गाड़िया दिखाई दे रही है और बाहर से --